दिए एक पत्थर का मूर्ति है जिसमें मूर्तियों में और जो है एक हवा का रुख है।

कहा जा रहा है की जो है ये एक लड़का हरे कलर की टी शर्ट पहने है दूसरा लड़का भी हरे कलर -----

इसका नंबर ए पी ज़ीरो थ्री सी एच चंडीगढ़ फिफ्टीन है और ये लोग इसे देख रहै है ये हवा हवा भरने के काम आता है और ये बहुत ही अच्छा काम है।

और बहोत सारे परदे है और इधर की ओर एक वो भी हैऔर एक---

नीचे की ओर एक सोफ़ा पड़ा है। उसने सफेद कलर की टी-शर्ट पहन रखी है।

पीछे की ओर एक गुब्बारा है ऊपर की ओर एक पंखा टंगा हुआ है।

ऊपर की ओर बहुत सारे गुब्बारे हैं जिसमें नीले गुलाबी सफेद गुब्बारे हैं और ऊपर की ओर एक आदमी खड़ा है।

यह एक एस.बी.आई. ए.टी.एम. के सामने का दृश्य है यह एक खाली रोड पर है और एक आदमी अपनी साइकिल से कहीं जा रहा है।

पीछे की और हरी चीज़ है और जो है की और से इसका पानी गिर रहा है। लाईट में कुछ कर रही है। पीछे --

और ये कई ऊपर दुपट्टे लगे हुए है इन सब दृश्य में बहुत ही --

ये एक बहुत ही दृष्टिहीन है और इसे देखा जा सकता है। पेड़ हमे ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरीके से देते है।